डॉक्टर राजेश कुमार का हॉस्पिटल है हमें दिख रहा है एकठो फोटो है और एक लड़का आगे उसके आगे खड़ा है और देखते है डॉक्टर के हॉस्पिटल के सामने चार पांच लोग खड़े हैं।

और हमें दिख रहा है यहाँ पे ईट भी गिरा हुआ है और यहाँ पे काला काला किया हुआ है लगता है क्या सौ साल पुराना ये घर है लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं आया आता है देखने के लिए आया हूँ लेकिन बहुत --

ये लगता है जमुई का सोनी गवरमेंट्स वस्त्रालय है और यहाँ पे लेडीज एवं ब्वॉयज का भी कपड़ा मिलता है। इसके बगल में लगता है --